और सड़क पे भी कुछ लोग खड़े हुए--

इस इमेज मे देखियेगा यहां पर एक बड़ी सी लाइब्रेरी दिखाई दे रही है।

जिनके हाथों में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं।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

हवेली दिखाई दे रही है और अंदर देखिएगा काफी सारी लाइटें जलती हुई नजर आ रही हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक गार्डन नजर आ रहा है।

पीछे एक लेडी दिख रही है जिसके हाथ में बच्चा है और उसने बैग टांगा हुआ है।

कमरा नज़र आ रहा है ज़हाँ पर सीढ़ी दिख रही है दिवाल पर गांधी जी का फोटो है।